जो कि एक आदमी खड़ा है ब्लू शर्ट पहन कर और ब्लू जीन्स और हेलमेट लगाया हुआ है काले रंग की--

और बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं।

यहां पे एक दुकान है श्रीराम ऑटोमोबाइल के नाम से।

ओर बगल में ड्राम रखी हुई है बुल्लू कलर की ओर एक आदमी नोरंगी कलर का जर्सी पहना हुआ है ओर खाना ले कर जा रहा है।

तीन कुर्सी भी रखा हुआ है और नीचे में पक्का है।

और आसमान भी दिख रहा है और टावर भी दो है।

ओर एयर फोन है चार्जर भी है और डाटा केबल भी है।

और उजले रंग का बल्ब भी जल रही है।

रोटी के ऊपर हाथ रखी हुई है और पानी बोतल है।

एक आदमी खड़ा है उजाले शर्ट और बुलू जींस में और वहां पे एक टेंपो है पीले और हरा में जोकी अंदर में एक आदमी बैठा है और दो बाइक है।

यहां पे एक दीवाल है जो की ब्लू रंग की है पेप्सी लिखा हुआ है।

यहां पे लिफ्ट लगा हुआ है जो कि दोनों तरफ से सीढ़ी है।

और बहुत सारे टेबुल कुर्सी भी है।

और खाना भी बगल में रखा हुआ है।

और केला भी रखा हुआ है और पपीता भी है।

और एक प्लास्टिक भी है।

रेलिंग भी है लोहे का।

यहां पे दुकान है जो कि टाटा स्काई की छतरी रखा हुआ--